ये आप मारुती कार देख रहें | ये सफ़ेद रंग की है ।

बहुत सारी गाड़ियों के सामान पड़े हैं। ऑक्सीजन के सिलिंडर रखे हुए हैं। लोहे का गैरेज का दरवज्जा है।